यह चित्र एक ए.टी.एम. के बाहर का नजर आ रहा है यहां पर शीशे का काम हो रखा है बाहर की ओर पीले रंग के फूलों से सजावट की हुई नजर आ रही है।

व्यक्तियों ने सफेद बसंती रंग के कपड़े डाले हुए हैं ऊपर आसमान का रंग नीला नजर आ रहा है।

यह चित्र एक नाई की दुकान का नजर आ रहा है जहां पर एक व्यक्ति नीले रंग का कपड़ा ओढ़कर मुंह पे एक मास्क लगाए हुए लेटा हुआ है।

यह चित्र एक ए_टी_एम का नजर आ रहा है जहां पर नीले व हरे रंग के बोर्ड के ऊपर स्टेट बेंक एटीएम लिखा हुआ है कुछ लोग --

किताबों की दुकान को गुब्बारों से सजाया हुआ नजर आ रहा हैं वह सामने की ओर एक काले रंग की कुर्सी पर सफेद रंग की कमीज पहने एक व्यक्ति बैठा हुआ नजर आ रहा हैं।